यहाँ एक बिल्डिंग है और शांत पड़ी हुई है और हरा सफेद कलर है और यहाँ पे बहुत सुंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यहाँ एक विद्यालय है और बहुत ही छोटा बहुत ही पुराना बहुत ही अच्छा स्कूल है।

यहाँ एक रोड है और रोड के पास बहोत बड़ा बहोत पुराना बहोत गंदा स्कूल है।

और यहाँ पेड़ ही लगे हैं। बहुत हरे-भरे बड़े-बड़े बहुत सुदर-सुदर पेड़ लगे हुए हैं। बहुत हीं सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है।